यहां एक लड़का के हाथ में गुब्बारा है जो गोले आकार का है।

यहां पे कुछ गिट्टियां रखी हुई दिख रही है एक झंडा फहरा रहा है।

ऊपर में एक तार दिख रहा है जो उजाला रंग के है पीछे में दीवार पर घड़ी लगा हुआ है।

एक बोतल रखा हुआ है दो काले रंग का चेयर दिख रहा है।

यहां पे एक बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है बिल्डिंग लाल रंग का है।

यहां कुछ और पेड़ दिख रहे हैं ऊपर में तार दिख रहा है जो काले रंग के हैं ऊपर में आसमान दिख रहा --

नीचे में पानी बह रहा है पीछे में बहुत सारे कीचड़ दिख रहे हैं।

बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं और पीछे में कुछ पौधे दिख रहे हैं और कुछ घास दिख रहे हैं और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

ऊपर घर के ऊपर दरवाजा दिख रहा है यहां पे तीन आदमी दिख रहा है एक आदमी पीछे बैग लिया हुआ है जो काले रंग के हैं।

ये बाइक के ऊपर एक काला रंग का हेलमेट रखा हुआ है।

यहां एक मंदिर का दृश्य दिख रहा है मंदिर के बगल में एक बहुत सारे मूर्तियां बनी हुई है।

यहां पे एक छपरा दिख रहा है नीचे में कुछ चेयर दिख रहे हैं जिस पे बहुत सारे महिला और पुरुष बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां एक टेबुल दिख रहा है टेबुल के ऊपर एक बोतल रखा हुआ है।

यहां पर एक छठ घाट का दृश्य दिख रहा है छठ घाट के अंदर बहोत सारे चटाई बिछाई हुए हैं।

ऊपर में एक टेंट लगा हुआ है जिसमें लोहे के दो डंडे लगे हुए हैं जिसमें एक लाइट लगा हुआ है।

ल लाल कलर का फ्रॉक पहनी हुई है पीछे में बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।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

एक स्विच बोर्ड दिख रहा है जिसमें चार्जर लगा हुआ है चार्जर काले रंग के हैं यहां पर दो तीन चेयर दिख रहे हैं जो काले रंग के हैं।

पीछे में कुछ व्यक्ति दिख रहा है और एक पोल दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ तार लगे हुए हैं।

उपर में कुछ फ्रेम टंगे हुए हैं भगवान जी के और उसमें माला लगा हुआ है यहां पे एक बाइक का ऐनक का दृश्य दिख रहा है।

यहां एक दुकान का दृश्य रहा है दुकान के अंदर एक टेबुल दिख रहा है जिसके ऊपर काले रंग का लैपटॉप रखा हुआ है बगल में माउस रखा हुआ है।

यहां पे दो नकली कार का दृश्य दिख रहा है कार के ऊपर दो महिला और दो बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं।

ऊपर में चार पांच सीट शटर दिख रहे है नीचे में दो टेबल और एक चेयर रखा हुआ है एक चेयर पर आदमी बैठा हुआ है।

यहां पे मुर्गी का भी चित्र बना हुआ है पीछे में एक पेड़ दिख रहा है और ऊपर में आसमान में बादल दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ रॉड दिख रहे है नीचे में बहोत सारे घास दिख रहे है।

ऊपर में कुछ स्विच लगे हुए हैं इसमें तार लगा हुआ है जो काले रंग के हैं।